एक बेंच है कुछ बच्चे बैठे है और ये ऊपर ये नाई की दुकान है इसके सामने लोहे का गेट लगा है ।

यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा मैदान है घास उगी हुई है कुछ फूल उगे हुए हैं साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो सीढ़ी लगा के खड़ा है।